इस पिक्चर में मुझे कच्ची जमीन दिख रही है जिस पे बहुत सारे मिट्टी हैं और पेड़ हैं बड़े बड़े।

अ जिसके आस पास अ एक दो आदमी हैं।

इस पिक्चर में मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान जी का शो चल रहा है कोई इसमें बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए।

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रा है जिसमें बहोत अच्छी लाइट्स लगी हुई है।

जो कि एक विधालय है पश्चिम चंपारण बगहा में।

और शाम का समय है बादल घेरा हुआ है भवन के आगे बड़ा सा ग्राउंड है कच्ची जमीन है।

और इसमें बहोत सारे नमकींस भी नमकीन भी हैं।